गेट दिखाई दे रहा है झांझरिया लगी हुई हैं डोना लोहे वाली --

पे कुछ जेंट्स लेडीज़ खड़े हुए हैं टंकी दिखाई दे रही है कार खड़ी हुई है साइकिल खड़ी हुई है कचरे वाली गाड़ी दिखाई दे रही है एक पंपलेट लगा हुआ है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में वाइट कलर पुता हुआ है उसमे खिड़कियां लगी हुई है।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

अन तार दिखाई दे रहा है कैबिने दिखाई दे रही हैं बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं बहुत सारे ग्रीन कलर के पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं रोड दिखाई दे रहा है।

एक रोड दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहा है रंग बिरंगे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारा खाना रखा हुआ है चावल रखे हुए हैं खीरा रखे हुए हैं खीर --